और ऊपर वाले फ्लोर पर ए_सी भी भ लगी हुई है।

इसके साइड में एक नीले और सफेद रंग का घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक लड़का अ फोन को शीशे के सामने खड़ा होकर फोटो खींच रहा है।

यह तस्वीर एक झील की दिखाई दे रही हैं यहां पर अह पानी बेह रहा है।

ईद गिर्द बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बच्चे बिल्डिंग को घुर रहे हैं।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

स्टेडियम के पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां पर लाल रंग की कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

एक यहां पर अ नीले रंग अं का टीन लगी हुई है यहां पर हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं और पीछे से एक स्कूटर भी दिखाई दे रहा है गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

और साथ में ही एक बाथटब भी दिखाई दे रहा है और एक शावर भी दिखाई दे रहा --

यहाँ पर एक औरत मास्क लगा कर जो कि एक टीचर दिखाई दे रही है जिसको हम अध्यापिका भी बोलते है।

बेड के ऊपर एक काले रंग का टॉवल रखा हुआ है।

यह तस्वीर किसी चर्च की दिखाई दे रही है जहां पर अपने भारतीय झंडे को फेहराया जा रहा है।

यह तस्वीर स्टेट बैंक ए_टी_एम की दिखाई दे रहे हैं।